यह एक पार्क है जहां पर बड़े छोटे पेड़ पौधे भी हैं।

छोटी छोटी गलिया भी है यहां पे उन पौधों के नाम भी लिखे है।

खंभे भी हैं छोटे बड़े पौधे पेड़ हैं।

पौधे पेड़ दिख रहे हैं हरियाली दिख रही है कार दिख रही है लोहे की सरिया दिख रही है।

इसमें एक लड़का है की तस्वीर दिख रही है और कैरेट भी है और अंगूर में कुछ टहनियां भी है।

यह एक घर है यहां पर पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा--

यह एक ऑफिस है यहां पर बहोत सारी ब्लैक कलर की कुर्सियां है।

अखबार भी है लाइट है एक बोतल दिख रही है।